है सोफे मुझे सफेद रंग के दिखाई दे रहे है।

दुकान में मुझे सामने डिस्प्ले मोबाइल रखे दिखाई दे रहे हैं।

घर पर मुझे ऊपर लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

यह आदमी मुझे काम करता हुआ नज़र आ रहा है।

सामने मुझे एक आदमी सेल्फी लेता हुआ नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में एक कपड़े की दुकान दिखाई दे रही है।

दुकान पर मुझे काफी सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सोफे के सामने मुझे एक टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है।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

सड़क के दोनों तरफ मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

रेलवे स्टेशन पर मुझे कुछ पटरियां दिखाई दे रही हैं।

सामने मुझे अमदरा का बोट दिखाई दे रहा है।

मुझे और सामने एक सड़क दिखाई दे रही है सामने मुझे कुछ बड़े पेड़ दिख रहे हैं।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

सामने मुझे एक ऑटो दिखाई दे रहा है।

वे ऑटो मुझे हरे और पीले रंग का दिख रहा है।

मुझे कुछ सफेद और नीले रंग के बलूंस दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहें हैं।